और मुंह में माक्स लगाया है जोकि ऐल्लो कलर का है और इधर बगल वाला आदमी ब्लू सट पैंट और चप्पल पेहना हुआ है और दोनों खड़े --

बनाया गया है और एक रोड भी गई हुई है जिस पे कुछ आदमी खड़े हैं और सामने में हरा पेड़ बहुत सारा है।

जोकि हरे कलर का है और एक नदी के ऊपर से एक फूल गई हुई है जोकि बहुत --

सामने एक पुतला रखा गया है जिसको कोट और शर्ट पहनाया गया है और ऊपर में एक --

और सामने में एक शटर टाइप बनाया गया है जिसमें चार लोहा लगाया गया है इसके सपोर्ट --

और सामने में दो चेयर लगे हुए है एक चेयर पे--

और अंदर में वाइट कलर का विंडो लगा हुआ है जिसमें चव्हाईट कलर का चमक रहा है और अंदर में --